इस फोटो में एक शेर है टाइगर है टाइगर के--

वो बहुत दूर को है और बहुत बड़े-बड़े दरक पेड़ लगे हुए है पेड़ हरे रंग के है।

दो तीन चार बसें खड़ी हुईं हैं कुछ बच्चे दूर को खड़े हुए है मैदान है मैदान की बीच में।

रंग पुता हुआ है औरत लम्बे लम मोटे क्लर है।

और सुखी पत्तिया नीचे पड़ी हुई है। एक कुत्ता है।

बड़ी सी सीढिया है मस्जिद की। दो बड़ी बड़ी मीनारे है।

इस तस्वीर में एक पार्लर दिखाई दे रहा है जहाँ श्रद्धा पार्लर लिखा हुआ है। उसके बाहर तीन--